इस सड़क के बगल में बहुत चौड़ी-सी नदी है जो की नीली कलर की है बहुत खूबसूरत लग रही है और यहां की जो आसमान है वो भी रंग-बिरंगा जैसे की रेनबो की तरह।

यहाँ पर चौड़ा से सड़क है जिस पर साइड में घास उगे हुए हैं और सड़क ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का नजर आ रहा है और इसमें ग्रे कलर भी मिक्स है और एक बड़ा सा दरवाजा है।

ये एक दुकान है जिसमें पीले ऑरेंज और सफेद कलर के फूल बोरे के ऊपर खुले रखे हुए हैं और कई सारे यहाँ पर सफेद बोरे भी रखे हुए हैं यहाँ पर एक बड़ा सा पिलर है।

और अंदर रिसर्च सेंटर में एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक चौड़ा-सा ब्लैक कलर का दरवाजा भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का घर है। जिसकी दो खिड़कियां है। खिड़की के ऊपर रेड कलर पर्दा लगा हुआ है।

पीछे एक कुकर रखा हुआ है उसके बगल में एक डब्बा भी है।

सामने एक लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है नीचे बड़े-बड़े मेन गेट हैं जो कि खुले हुए हैं।

किनारे पर चैनल का दरवाजा नजर आ रहा है। जिसके अ बाहर से रोशनी आ रही है। किनारे पर छो दो-तीन पत्ते नजर आ रहे हैं।

सामने एक जेनमाज बिछा हुआ है जेनमाज काफी लंबा है यहां सामने का आदमी नमाज पढ़ रहा है।

सामने एक बड़ा सा थिएटर नजर आ रहा है जिसके अंदर काफी सारी कुर्सियाँ लगी हुई है बीच में छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ चारों तरफ काफी सारे लाइटस जल रहे हैं।